बहोत सारे चीज़ो रही हुई हु --

वाइट कलर की पुरानी नगरी है काफी पुरानी है फिर पेड़ -पौधे तो नहीं है घास है छोटे-छोटे अ झाड़ियाँ टाईप भी है दोफ में एक लड़की है एक तरफ कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा हैं।

ये एक खंडहर टाइप हैं।